कुछ डब्बे दिखाई दे रहे है कुछ कुछ छोटी डब्बे दिखाई दे रहे कुछ बड़े डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे कुछ बच्चे दिखाई दे रही है जो चद्दर पे बैठे हुए है।

ऊपर लाइटें लग री है वो दिखाई दे रहे है दरवाजा दिखाई दे रहा है उसकी कुंडी दिखाई दे री है आधा दरवाजा दिखाई दे रहा है।

मुझे एक यहां स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जीनमें तीन लोग आ तीन आदमी नहा रहे हैं।

एक ए_सी लगाई हुई दिखाई दे रही है ऊपर लाइटें लग रही है वो दिखाई दे रही है ग्रिल लगाई हुई है लोहे की वो दिख जंगड़ा लगा हुआ है वो --

ने एक हाथ उसके सर के पीछे ले रखा है र एक--

डायरेक्ट बात करें ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है मुझे लिखा है गायों का हॉस्पिटल लगता है गाय बहुत अच्छी तरह से पुतला बनाया गया है गायों का --

मुझे कुछ इंसान दिखाई दे रहे कुछ औरतें कुछ पुरुष नजर आ रहे है जो अलग --

पट्टे डले हुए वो दिखाई दे रहे पीछे आसमान दिखाई दे रहा पेड़ ब--

आजाद नॉर्मल सा नाम दिखाई दे रहा है ज्यादा बड़ा नाम नहीं दिखाई दे रहा है छोटा सा नाम दिखाई दे रहा है एक दरवाजा बना गया हु --

अंटो से बड़ी झाड़किया दिखाई दे रही है पीछे पेड़ कीकर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे गाड़ी व्हाइट कलर की है जोकि थोड़ी दिखाई दे रही है।

एक टेबल नीचे पड़ी हुई दिखाई दे रही है दो टेब दो टेबलें बड़ी बड़ी लगी हुई है एक उस कचरा बॉक्स के लिए कचरा बनाया गया है एक --

बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसके ऊपर दो टंकी लगाई हुई है पानी की जो वो बहुत ही छोटी छोटी दिखाई दे रही है।